और इसमें कुछ गल्ले भी लगे हुए है।

मदरसे में टैल लगी हुई है और इसमें कई सारे गेट है।

और ये आदमी भी बैठे हुए हैं।

दुकान में कुछ दवाइयां भी रखी हुई है।

यहां पे पेट्रोल पंप भी है।

छत में लाइट भी लगी हुई है।

यहां पे रेस्टुडेंट है।

टप्पर के नीचे कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं।